यहाँ पर एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है। ग्राउन्ड में टेंट लगे हुए हैं। ग्राउन्ड --

यहाँ पर एक हाल दिखाई दे रहा है | हाल में बोहोत से दरवाजे लगे हुए हैं ।

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान के ऊपर मस्जिद छोटे-छोटे बने हुए हैं।

यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद में बहुत सारे डिज़ाइन की हुई खिड़कियाँ लगी हुयी हैं।

मकान के बाहर एक सुन्दर सा गेट बनाया गया है।

गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा है।